औ उसमें किसान भी है बैठा हुआ।

जे पेट्रोल पम्प लग रहा है। यहाँ से कारें कुछ लोग --

व्यक्ति खड़े होकर के बटन दबाने के बाद --

लोग आ रहे हैं। जा रहे हैं। फिर उसके सामने से भी एक एक रास्ता है।

और कुछ लोग खड़े हुए हैं।